इन बॉक्सों में बहुत सारा सामान रखा है।

ब्लू कलर के नीले रंग के कुछ डब्बे रखे हुए हैं।

ये एक दुकान है जहां पर मेकअप का बहोत सारा समान रखा हुआ है अलग अलग तरह का।

पास में ही एक मेन रोड जा रहा है घर का रंग है वह हरे रंग का है।

यह एक किराने की दुकान का वीडियो है।

कुछु फूलों की माला भी लड़की हुई है यहां पर पास में--